कुछ डायरियां भी मौजूद नजर आ रही हैं। वहीं सामने हमें कुछ --

यहाँ पर हम एक रोड देख रहे है। इसके किनारे पर एक बेहद ही पुराना सा --

इसके बाहर हमे दो ऐ.सी. के इग्ज़ॉस्ट नजर आ रहे हैं तथा वहीं बगल में --

इसपे बेहद ही खूबसूरत-सी सजावटे की गयी हैं। यहाँ पर बहोत सारे गेस्ट भी आये हुए हैं तथा --

यहाँ पर विभिन-विभिन प्रकार की आकृतियां भी बनी हुई है तथा फर्श पर बोहोत सारी मेटे बिछी हुई हैं।

यहाँ पर कुछ पुतले भी बने हुए हैं उन पुतलो नो भी कुछ कपड़े पहन रखे हैं।

दो अम्पायर भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने लाल कपड़े पहन रखे है।

के बाहर बहोत सारी एम्बुलेंस भी खड़ी हुई हैं तथा बहोत सारी दो पहिया चार पहिया वाहन भी खड़े हुए है।